ए इन दो गाड़ियों का कलर एक का सिल्वर है और एक का सफ़ेद है जो सफ़ेद गाड़ी है उसका बोनट खुला हुआ है।

यह तस्वीर एक बस स्टैंड की है जहाँ पे काफी सारी बसे खड़ी हुई हैं।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

आदमी और औरत के हर तरह के कपड़े पड़े हुए हैं।

जो नीचे चटाईयाँ बिछाई हैं वो अलग-अलग रंग की हैं और सामने एक टेबल पड़ा हुआ है।